जिसमें अं जिसमें जिसके बहार दो औरतें खड़ी हुई हैं।

और नीला आसमान दिख रहा है।

सड़क के उस पार जो है वो एक अ घर बना है। घर के बाहर ही कई सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं।

एक चेयर लगी हुई है नीचे।

और दूसरी एक और शॉप है।

जिसके बाहर जो है वो गाड़ियां खड़ी हुई है।

यह तस्वीर एक चर्च के अंदर की है।

अंदर की ओर काफ़ी सारे कार्स जो है वो पार्क की हुई है।

बाहर एक आदमी लाल और नीले कपड़े डालकर खड़ा है।

पीछे एक बहोत ही बड़ा एक हरा भरा खेत की तरह दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक दुकान है दुकान के अंदर जो है वो काफी सारा सामान रखा हुआ है।